यह हॉस्पिटल दिख रहा है हॉस्पिटल के वो सामने वाले गेट में एक अ लड़का खड़ा है।

यहा एक रूम है रूम में एक बेड है सोफा दिख रहा है एक टेबल अँड चेयर दिख रही है।

एक लैम्प दिख रहा है और ऊपर अ लाइट्स चालू है टी_वी है जो टी_वी है वो बंद है।

और एक कैमरा दिख रहा है लाइटस चालू है।

यह आसमान दिख रहा है और विवेकानंद का पुतला दिख रहा है।

यहाँ एक जिम है और जिम मे पूरे डंबेल्स रखे है। छो --

यह एक बडी सी बिल्डिंग दिख रही है और मेडिकल हॉस्पिटल है और लाइटस चालू है पूरा और बाहर दो गाड़िया दिख रही है और एक सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है चेयर पे बैठे हुए।

यह एक काउंटर दिख रहा है काउंटर में एक आदमी बैठा है ऊपर फैन है एक कैमरा दिख रहा है अ जो गेट है वो काच का है वो ओपन है।

ये गेट बंद है और गेट के बाहर एक साइकल खड़ी है।

ये पर्वत से नीचे पानी गिर रहा है मीन्स ये धब धबा है धब धबा दिख रहा है।

यह एक रूम है और कुषण है दो चेयर दिख रहे है दो--

यह एक तिकीट काउंटर है और वो काउंटर मे बोर्ड्स है।

यह एक जानकी टॉकीज है टॉकीज के बाहर बहुत लोग है और कार खडे है और बाइक से भी खडे है लोग और वहपे एक से धर्मवीर करके पोस्टर लगा है।